बराबर साइड में कुछ कुर्सियां और टेबल रखी हुई हैं।

सामने की तरफ कुछ घर भी बने हुए हैं।

और उसके साइड में एक हथौड़ा हथौड़ी और ब्रश रखा हुआ है।

एक साइड में काउंटर और तीन कुर्सियां रखी हुई हैं।

और कुछ अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर फूल भी लगाए गए हैं।

यह एक सब्जी की दुकान है इसमें अलग अलग प्रकार की सब्जी रखी हुई है।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम खान शाही रेस्टोरेंट है।

यह एक मंदिर है इसमें सुंदर सुंदर लाइटे लगी हुई है।

और बीच में कुछ लोहे की पाइपे खड़ी भी है।

और दीवारों पर कुछ छोटे-छोटे पोस्टर भी लगे हुए हैं।

और एक बस हाईवे के बीच में रुकी हुई है।

यह एक सिम की दुकान है।

और अंदर की साइड टेबल पर एक कंप्यूटर रखा हुआ है।

इस दुकान का नाम शक्ति स्वीट्स है।

और पीछे दीवार पर कुछ रंग बिरंगे सूट भी टंगे हुए हैं।

और काउंटर के ऊपर भी कुछ रंग बिरंगे सूट रखे हुए हैं।